इस इमेज मे एक साड़ी की दुकान जैसी फोटो नज़र आ रही है कुछ साड़िया टंगी हुई नजर आ रही है।

इस इमेज में एक व्यक्ति चाय छानता हुआ नजर आ रहा है।